यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसके बाहर बहुत सारे बाइक खड़ी है और एक ऑटो भी है।

और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं और इधर झरने से पानी बह रहा है और --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

यह एक पंप की तस्वीर है इसके अंदर दो पेट्रोल वाली की मशीने लगी हुई है।

बाहर दो आदमी त्रिशूल लिए खड़े दिखाई दे रहे है और आस पास में बहुत सारी बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

और इसके आगे एक बंदा दो बंदे कुर्सी पर बैठे हैं और उनके आगे टेबल पर मोटरसाइकिल कार की चाबी रखी हुई है जो कि --

यह एक क्लीनिक है। जिसके अंदर डॉक्टर --

जिनका का कलर बहोत ब्लैक है और यह बहोत सारे पड़े हैं इनके गुच्छे पड़े हैं और कैरेट पर --

हाथ में वाइट कलर का फूल दिखा रहा है और आस पास में बहुत सी हरी भरी झाड़ियां दिखाई दे रही है और हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े --

और के बाहर दीवार के पास बहुत सारी बाइक व स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है और उनके लिए --

यहां आस पास बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक गुफा दिखाई दे रही है और उसके आगे एक आदमी खड़ा --